और चटनी और इडली आ रखी हुई हैं खाने के लिए।

के आगे बजे अ --

चित्र में देख सकते हैं कि ये एक स्विमिंग पूल है जहां पे एक झूला है और बच्चे उस स्विमिंग पूल में खेल सकते हैं नहा सकते हैं और आ लाइक इंजॉय कर सकते हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं एक पुराना किला है यहाँ पे पत्थरों से बनाया गया है ये एक टूरिस्ट प्लेस लग रहा है एंड इधर-उधर सारे झाड़ियाों के बीच में ये किला है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक तालाब है। तालाब के किनारे कई सारे नाव रखे हुए हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं की ये एक पुस्तकों की दुकान है बुक स्टोर है।

वहाँ पे अंदर आ कुछ तिजोरियों जैसा रखी हुए हैं और ये-ये पुराना खंडहर जैसा बिल्डिंग है।

यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियो को पेट्रोल या डीजल डलवा के जाते है और यही पेट्रोल डीजल डलवाने की जगह होती है पेट्रोल --

चित्र में हम देख सकते हैं एक अरमानी एक्सचेंज का लाल रंग का --

पीले रंग की बोहोत ही स्वादिष्ट जलेबियो को आ सजा के रखा रखा गया है।